ये देखिए कितना अच्छा पार्क ये भटनी का पार्क है। कितना अच्छा स्लाईड इसपे देखिये दो दो बच्चे है सब एक कोई लड़की भी नहीं है। बहुत शानदार सजेगा। शायद जो लड़की दिखाई दे रही है छोटी सी बच्ची है और ये देखिये लड़का गिर रहा है इसका नाम चावल है और क्या शानदार सीढ़ी ओढ़ी चढ़ने के लिए ये बहोत अच्छा गार्डन --